सज - धज के खड़े है और बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

प्रतिमा है जो की बैठी हुई दिखाई दे रही है और उन पर --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

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है । सामने देखने से ऐसा लग रहा है की य कोई आली सान घर हो।

और कुछ अंदर दिख रहै है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए _टी _एम --

यहाँ पर भगवान जी की फोटो चिपकी हुई है पेज पर--

और सामने एक नाव पर दो लोग नज़र आ रहे है।

टेबल नजर आ रहे है और उस पर दो गिलास रखे हुए है और यहाँ एक पलेट में --